यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो की एक नज़र आता है और यहाँ पर पहाड़ी एरिया आप लोग को नज़र आएगा जो की--

ये किसी एक राशन शॉप का दुकान नजर आ रहा है जहाँ पर आप लोग देख सकते है अलग - अलग सामन यहाँ पर रखा है जैसे की अंडा --

और एक यह जनर्ल स्टोर टाइप में प्रतीत हो रहा है और उसके पीछे में आप लोग को कम्प्यूटर देखने को मिल सकता है और उसके नीचे सी पि यू रखा है।

और अलग-अलग और यहाँ पे पैकेट आप देख सकते है जैसे की लेस रिंग --

ये किसी अंदर महजिद अंदर का नजारा आप लोग नजर आ रहा है जो की काफी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा हैं और ऊपर में--

यह पानी को निहारते हुए नजर आ रहै है ये काफी लम्बा बाँध प्रातीत होता है।

किसी घर में रखे का तस्वीर है जिसमे आप लोग को एक फिश दिखाई दे रही जो काफी सुन्दर दिखाई दे रही है।